जोकि हर कलर की हैं। रैक बना हुआ है। हर रैक के अंदर किताब भरा हुआ है।

एक डब्बा हाथ मै ले रखा है जो --

किनारे-किनारे कुर्सियां रखी हुई हैं कुर्सियों को --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

और जो ये परदे लगे हुए हैं जो शमियारा लगा हुआ है वो नीले और सफ़ --

पर मुझे मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान के सामने मुझे एक कछुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दिखाई दे रहा है की एक आदमी टैक्सी लेके जा रहा है। वहाँ उ कुछ लोग बैठे हुए सामने की तरफ पेड़ दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ एक --

ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा आसमान मे बादल।

टेंट लगाया गया है रंगबिरंगे कलरो रंगों में --